इस पिक में हमें एक टेबल दिख रहा है।

नदी पर झरना बेह रहा है।

इस पिक में हमें एक वार्ड दिखाई दे रहा है।

जिसमे लिखा हुआ है फीमेल जनरल वार्ड --

एक घर बनता हुआ दिख रहा है।

एक बड़ा सा डायनासोर दिख रहा है।

इस पिक में हमें एक शिवलिंग नजर आ रहा है।

कई लोग भी दिख रहे हैं।

बहुत ही सारे थंभे दिख रहे है।

और झाड़ भी दिख रहे हैं।

यहां हमें कई तरह के कबाड दिख रहे हैं।

लाइट के थम्बे लगे हुए हैं।

फिश एक्वेरियम नाम का और हमें--

बहोत लंबे टेबल लगे हुए हैं।

और एक बिल्डिंग दिख रही है।

और सफेद कलर की भी दिवाल है।

एक काउंटर भी दिख रहा है।

इस पिक में हमें पीले कलर की दीव बिल्डिंग दिख रही है।

बैठने के लिए बेंच नज़र आ रही है।

और जालीयां नजर आ रही है।

इस पिक में शिव फिट जिम एंड फिटनेस सेंटर का बोर्ड नजर आ रहा है।

बॉक्स के ऊपर स्टीकर लगे हुए हैं कुछ बॉक्स प्लास्टिक में पैक है।

लोग नीचे भी खड़े हुए है।

यहां हमे एक बड़ा गेट दिख रहा है।

इस पिक में हमें शादी का मंडप दिखाई दे रहा है।

इस पिक में हमें एक पंखा दिख रहा हैं।

एक ब्रिज भी दिख रहा है।

इस पिक में हमें एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

एक लड़की बैठी हुई है एक लड़की खड़ी हुई है एक लड़का भी खड़ा हुआ है तीनों मोबाइल चला रहे हैं।

सामने स्विच बोर्ड दिख रहा है और एक वॉल दिख रही है जो रेड कलर की है।